दिए गए चित्र में दो युवक दिखाई दे रहे--

पीछे कुछ साइकल भी दिखाई दे रही साइकल का रंग नीला काला है और पा--

और यहां पर कुछ मिट्टी भी पड़ी हुई है।

इसकी स्थापना उनिस सौ उनहत्तर ईस्वी में हुई।

और छत के उ की दीवार पर कलर क्रीम हो रहा है।

साइड में एक गेट भी है दीवार पर एक एल_सी_डी भी लगाई हुई--

दिये गये चित्र में एक डबल बेड का बाक्स दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ मकान भी दिखाई दे र--

जो की लाइट की झालर से सजावट की गई है।

यहां पर इस दुकान के अंदर बहुत सारी दवाईयां रखी हुई है।

साइड में एक टेबल भी पड़ी हुई है।

यह चित्र एक मैरिज हॉल का है।

दिए गए चित्र में एक बोर्ड दिखाई दे रहा बोर्ड के ऊपर चाणक्य लिखा गया है।

कुछ कार और स्कूटी एंड बाइक भी खड़ी हुई है।

नाइन थ्री वन नाइन वन फाइव फाइव फोर ऐट फोर ।

दिखाई गई छवि महिंद्रा स्कार्पियो सन दो हजार अठारह मॉडल की है।

इसमें बहुत सारे युवक दिखाई दे रहे हैं।

कुछ युवक रनिंग कर रहे हैं नीचे धरती पर हरे रंग का घास दिखाई दे रहा है।